स्टेडियम की सीट बहोत ही अच्छी है जोकि ग्रीन --

शॉप बहोत ही अच्छी है बहोत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआं है इसमें एक फाइन नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी कारखाने की है इसमें सारे लेबर्स --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की ये एक जिम क्लास की तस्वीर हैजिम क्लास में बहोत ही सारी मशीन है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है की ये एक पिंजरे की तस्वीर हैपिंजरे में दो तोते हैं।

पिंक एण्ड ग्रीन कलर के और बहोत ही अच्छे लग रहे हैं।

और कुछ दो रूम्स बने हुवे हैदो रूम के उपर टंकी लगी हुइ है जोकि वाइट कलर की है।

दिखने में केक बहोत ही अच्छा और टेस्टी नजर आ रहा है।

फ्रूट कीवी पपीता सेब है।

की दुकान का नाम मयूरी ई रिक्शा दुकान का नाम है।